यह स्विमिंग पूल के बाहर का सीन है और इस जिस मे इसका गेट दिखाई दिखाई दे रहा है।

यह कुक्कू फन जोन स्विमिंग है जो स्विमिंग है चुरू केंद्र है लॉड्स इंटरनेशनल स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। जो--

अलग-अलग प्रकार के यह गेट पर बैठा है मोर इसके दो टांगें होती है ये बहुत ही सुंदर--